ये पार्क है पार्क बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर मनोरंजन का बहुत साधन है पेड़-पौधे है बहुत सारे वृक्ष है और देखने में बहुत सुहाना लग रहा है ये दरवाजा भी यहाँ पर है वो भी अच्छा दिख रहा हैं।